ये चित्र किसी मैदान का दिखाई दे रहा है जिसमे तिरंगा लहरता हुआ दिखाई दे रहा हैं।

ये चित्र किसी रेल्वे स्टेशन का दिखाई दे रहा है जिसमे एक रेल खड़ी हुई है।

पहाड़ का दिखाई दे रहा है जिसमे लोग घुमते हुए नजर आ रहे है।